पीछे पर्दा लगा हुआ है जो कि ब्लैक कलर का है यहाँ पे लाइटिंग भी लगी हुई है जो कि स्टार कलर की है स्टार स्टार की ल लाइटिंग है जो एक लड़की है वो ब्लू एंड पिंक कलर का टॉप पहनी हुई है एक ब्लू कलर का जीन्स पहनी हुई है और उसके बाल लम्बे है।

पुल दिखाई दे रहा है जो कि पुल है पुल के बीच नदी है पुल के नीचे नदी है और जो ये पुल बना है वो लोहे का बना हुआ है।

एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें ग्लास लगा हुआ है बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो की सीमेंट जैसी दिखाई दे रही है ये जो बॉक्स हैं वो ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है इसके ऊपर लाइटिंग दिखाई ट्यूबलाइट की लाइट दिखाई दे रही हैं यहाँ पर ये जो बॉक्स है वो लॉक किया गया है।

एस.बी.आई. का ए.टी.एम. कार्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे एस.बी.आई. भारतीय स्टेट बैंक ए.टी.एम. कार्ड का बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर ए.सी. रखा हुआ है यहाँ पे एक साइकिल भी खड़ी हुई है एस.बी.आई. का जो बोर्ड है वो नीले कलर का लगा लिखा हुआ है।

ट्रेन जैसा दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारी लाइटिंग दिखाई दे रही है बहुत सारे चेयर और टेबल रखे हुए है कुछ लोग इस टेबल में बैठे है कुछ लोग खड़े है यहां --

वन जैसा दिखाई दे रहा है ये जो भवन की इमारत है जो वाइट कलर की दिखाई दे रही है यहाँ पे जो टाइल्स लगे हैं वो सीमेंट एंड वाइट कलर की दिखाई दे रही है चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है दूर-दूर तक कोइ दिखाई नहीं दे रहा है।

मार्ट है जिसमें बहुत सारे ग्रोसरी के आइटम दिखाई दे रहें हैं जो ग्रोसरी के आइटम हैं वो कुछ ऑरेंज कलर के हैं कुछ येलो कलर के हैं कुछ ग्रीन कलर के हैं कुछ पर्पल कलर के हैं कुछ उम्म्म अलग-अलग प्रकार के कलर यहाँ ग्रोसरी के आइटम दिखाई दे रहें हैं।

यहाँ पे एक चाय का टपरा दिखाई दे रहा है जिसमें शादी कार्ड दुर्गा प्रेस के नाम का बोर्ड लगा हुए है जिसमें बहोत सारे जो पाउचेस रहते हैं खाने के वो लगे हुए हैं यहाँ पे एक टपरी टाइप का जिसमें दो डंडे से वो कवर किया गया है यहाँ --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

इंसान गाड़ी से जा रहा है जैसे गड्ढा किया जा रहा है जो मशीन का कलर पीले कलर का है यहां पूरे तरफ पत्थर ही पत्थर फैले हुए है कुछ बड़े पत्थर है कुछ छोटे पत्थर है चारो तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है और पत्थरो का ढेर दिखाई दे रहा है यहां पे।